एक कार्यालय है। वहाँ पे सामने बहोत सारी बाइक्स खड़ी है। स्कूटी खड़ी है।

पेट दर्द का दवाई मिलता है। बहोत सुंदर लगता है। एक नंबर का काम है। वि विंध्यन विंध्य हेल्थ क्लिनिक है।